यहां पर खिड़की है जो खुली हुई है इस पर बास लगा हुआ है जिस पे दो आदमी खड़े हुए हैं।

सी.के टू ज़ू थ्री फाइव लिखा हुआ है इसके नीचे ग़दा पड़ा हुआ है ग़दा भूरे रंग का है ।

टेंपो के आगे एक लड़का चेयर डालकर बैठा हुआ है जिसके आगे मेज है उस पे एक आदमी टेक लगाए खड़ा हुआ है ।

पास में जो है सूखा पड़ा हुआ है जो भूरे रंग की की ज जमीन है सामने मुझे सूरज दिख रहा है जो पीले रंग का है आसमान --

और इसको गार्निशिंग किया गया है अम लाल कलर के पत्तों से और बंदे --

वो स्लेटी रंग की है जिसके सामने एक पेड़ है जो हरे रंग की पत्तियां यहां पर तार भी लगा है काले रंग का ।

और काउंटर पे कुछ अअम स्टीकर लगे हुए हैं जिसके दुकान के अंदर एक लड़की खड़ी हुई है और दुकान के बाहर की जो फर्श है वो सलेटी रंग है।

जो लाल रंग के चमक रहे हैं जिसके ऊपर टंकी लगी हुई।

पास में रैक बनी हुई है जो लोहे की है जिसके ऊपर बाल्टी स्टूल और छत जो है सफ़ेद रंग की है उस पे लगा हुआ।